फर्श पर सफेद कलर का टाइल्स लगा हुआ है।

ये एक चित्र है ये एक बस स्टॉप का चित्र है।

दो केक बने रखे हुए हैं एक पिंक कलर का केक है एक येलो कलर का केक है।

यहां पर पाइप लगे हुए हैं नीली कलर की जालियां पुती हुई हैं।

इसका नाम मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम है।

बाहर एक लड़का खड़ा हुआ है।

तीन से चार लोग गाड़ी के अंदर बोरियां डाल रहे हैं।

ये एक चित्र है ये एक किले का चित्र है।

किले के आसपास बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

यहां पर एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है।

सामने लेट्स क्रिकेट भोपाली लिखा हुआ है।

लोग बाहर की तरफ खड़े हुए हैं।

गार्डन में बहुत बड़ी-बड़ी घास लगी हुई है।

यह एक चित्र है यह एक सलोन का चित्र है।

जो ब्राउन कलर से पोती है बिल्डिंग में नीले कलर के कांच लगे हुए है बाहर एक पेड़ लगा हुआ है।

ए एक रास्ते का चित्र है इसमें साइड में बड़े बड़े खजूर के पेड़ दिख रहे हैं।

पीछे की तरफ एक जाली का सफेद बड़ा सा दरवाजा लगा हुआ है।

ये एक चित्र है ये एक शोरूम का चित्र है।

ऊपर एक सफेद कलर की टंकी रखी हुई है बाहर दो जगह पेड़ लगे हुए हैं।

यहां पर सूरज डूबने का समय हो रहा है।

ये एक चित्र है इसमें एक जंगल दिख रहा है एक जीप जा रही है।

जंगल में काफ़ी हरियाली है काफ़ी बड़े-बड़े पेड़ हैं जीप में कई लोग बैठे हुए हैं एक व्यक्ति जीप चला रहा है।

टेबल पर दो प्लेट्स चार डिश रखे हुए हैं जिसमें अलग-अलग तरह के खाने रखे हुए हैं राइस और सब्जी रखी हुई है।

यहां पर दूर घर नजर आ रहे हैं।

यह एक चित्र है यह एक जैन मंदिर का चित्र है।

एक व्यक्ति माइक में कुछ गा रहा है सामने चेयर्स रखी हुई हैं।